और वो अपने पास के सामान से अ आर्ट एंड क्राफ़्ट का वर्क कर रहे।

और नीचे भी लाइटें लगी हैं।

यहां पे पेड़ है और ऊपर हैलोजेन लाइट भी लगाई गयी है।

फूलों की माला है जो कि मोगरा की फूलों की माला है।

गुब्बारे ऑरेंज पीले और सफ़ेद रंग के लगाए हुए हैं।

और जो ये वॉटर पार्क है इसमे अ ओक्टोपस है सेंटर मे।

और एक दूसरे इंसान ने उसके कंधे पे हाथ रखा हुआ है।

और कुछ प्रोडक्टस है जोकि सामने रखे गए हैं।

और फुल्की या फुल्की की यहाँ पिक्चर भी दी गयी है। जिनको हम गोल गप्पे --

और ये जो टमाटर है इनमे कुछ खराब कुछ सही टमाटर भी हैं।

और साथ मे जितने भी अ लड़के हैं। उन्होने व्हाइट कुर्ता पजामा पहन के हाथ मे तिरंगा झण्डा लिया हुआ है।

और यहां पे अनगिनत दुकाने है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर।

यहा पे यूनियन बैंक भी है। और उसका ए.टी.एम. भी है।

और बीच मे से रास्ता जा रहा है। जहाँ से दो लोग ए दो लोग चल के आ रहे हैं और एक वहाँ खड़ा होके देख रहा है।

और साइड मे जो टेंट है वो गुलाबी और पीला है।